अलग-अलग ओकेजन के यहां पर फ्लावर खरीदते हैं फ्लावर बहोत प्यारे लग रहे हैं पर्पल कलर पिंक कलर के फ्लावर है।

और ये बहोत बड़ा सा एक होटल लग रहा है जिसमें इस्टॉल लगे हुए हैं आई थिंक यहाँ पे कुछ फंक्शन हो रहा है।

और बहोत सामने बहुत बड़ा सा ब्रिज हो रहा है ब्रिज पे आई थिंक --

अअअ रोड चल रही है और गाड़ी गाड़ी हल्की - हलकी गाड़ी कार दिख रही है जाते हुए --

इस स्टेज पे थ्री थ्री लेडीज बेठी हुइ है थ्री लेडीज कत्थकली डांस --

एक ऐ कोई दुपट्टा पहना हुआ एक ने येलो कलर ग्रीन कलर का --

और ये बहोत अच्छा हॉल लग रहा है हॉल में बहोत अच्छी ऊपर फोर सीलिंग लाइटिंग हो रही है।

ये एक छोटा सा एक ही रेलवे स्टेशन लग रहा है ये रेलवे स्टेशन बहोत ब बहोत --

ये एक बहोत प्यारी सी शो शॉप शोरूम लग रहा है जिस शोरूम में बहोत सारे परफ्यूम पड़े हुए हैं ई ईद आय थिंक इसे इ इतर कहा जाता है।

और आई थिंक यहाँ पर कोई फंक्शन ओर्गानिज़ हो रहा है जहाँ पर बहोत सारे स्टोल भी खड़े हुए स्टोल पे बहोत सारे शैफ खड़े हैं।

पहाड़ के सामने बहोत सारे ट्रीस लग रहे है और ये लोकेशन भी बहोत अच्छी आ रही है और पहाड़ के ऊपर एक --

बहुत सारे लोग देख रहे हैं जो इनकी परफॉर्मेंस देख रहे हैं और वो क्लैपिंग कर रहे हैं बहुत लोग खड़े होकर भी--

और जिन लोगों को और एक वहाँ पर बहुत अच्छे लग रहे हैं बहुत अच्छा व्यू आ रहा है गुरुद्वारे का बहुत प्यारा गुरुद्वारा लग रहा है बहुत सारे लोग यहाँ पर पू पूजा करने आए हुए हैं।

ये एक बहोत बड़ा सा एक जंगल लग रहा है जंगल में चारो तरफ ग्रीनरी है चारो तरफ पेड़ पोधे है चारो तरफ पेड़ बहोत अच्छे लगे हुए हैं।

बड़ा सा एक प्लेटफार्म लग रहा है प्लेटफार्म पर बहोत लम्बे लम्बे ट्रैक बने हुए हैं।

ये कोई हिली स्टेशन है जो ब एक आदमी बहोत ऊपर से एरिया से अपनी फोटो ले रहा है।

ओ आते हम एक्सरसाइज करते के एक आदमी एक मशीन पे बैठा हुआ है और अपनी एक्सरसाइज कर रहा है।

बहोत बड़ा जिम लग रहा है जिम की फोर्थस्लिग बहुत अच्छी लग रही है साथ और लाइटिंग लाइटिंग है बहोत प्यारा लग रहा है।